और इसे बनाने वाले बी_आर_आर प्राइड है।

बड़ी सी सुंदर हॉस्पिटल है जिसके आस पास बहोत सारे कार और बाइक और स्कूटी पार्क में लगे हुए हैं।

दो फिश टैंक हैं जो बहोत ही प्यारें दिखाई दे रहे हैं।

हेयर से रिलेटेड चीजे होती हैं इसमें एक सोफा है जो वेटिंग करने के लिए दिया गया है।

सी_जी जीरो फोर एच_एल नाइन एट नाइन जीरो हैं।

और भूरे कलर की टेबल है जिसमें दोस्त मजे से--

मेरे सामने एक योगा क्लास है यहां पे स्वीट इस फैट क्राइंग लिखा हुआ है।

बहोत से फल है जिसमें जाम स्ट्रॉबेरी --

यहां पायलों के थोक विक्रेता है यह बहुत ही सुंदर--

यह बहोत ही सुंदर दिखाई पड़ता है।

मेरे सामने एक मेला है।

और सुंदर पानी बह रहा है इसके आस पास--

भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ व पौधे हैं इसमें एक महिला पानी दे रही हैं।

बहोत सारे खिलौनो की दुकान है।

सुंदर और रंग बिरंगा लाइट वाला है।

यहां सभी प्रकार के बुक और कॉपिया पेन उपलब्ध है।

यहां पर बच्चे कराटे सीख रहे हैं और प्रैक्टिस करते हैं।

सुपर मार्केट है जो बहोत सुंदर है।